ये छोटा सा ग्राउंड दिख रहे हो न शायद ये स्कूल है। ये दो मंजिल का स्कूल है और कलर जो पुता हुआ है ऑरेंज है।

ये आपको पत्थर दिख रहे होंगे ईंटे डले हैं और यहाँ छोटा सा बंगला सा भी बना है। देख रहे होंगे आप।

और अ जूते वगैरह भी रखे हुए है बोहोत सारी चीज़े यहाँ पे देख रहें हैं आप ।

झंडा लगा हुआ है मस्त --